इस तस्वीर के अंदर मुझे एक सुंदर सा स्टैचू देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर के अंदर मुझे बहुत सारे इंसान नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे एक सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है।

देखकर एक रिसॉर्ट लग रहा है।

जिसके अंदर तीन आदमी बैठा हुआ है।

ग्रीन कलर और वाइट कलर का एक वायर भी देखने को मिल रहा है।

इसके नीचे में एक ब्लू कलर का ट्रिपाल भी देखने को मिल रहा हैं।

इस तस्वीर को देखकर मुझे यह लग रहा है किया एक होटल का तस्वीर है।

वॉल को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और इसको बंबू से बनाया गया है और रैक भी देखने को मिल रहा है।

सुंदर सा मंडप दिखाई दे रहा है जो की बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया--

इस तस्वीर के अंदर मुझे एक बरा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

ये वाइट लाइंस भी दिखाई दे रहा है और पीछे में एक इलेक्ट्रिक पोल्स है जिसमें बहुत सारा वायर्स भी लगाए हुआ है।

इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा हुआ देखने को मिल रहा है।

उसके बाद बहोत सारे छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिल रहा है उसके पीछे बहोत बड़े बड़े पहाड़ है।

में एक सुंदर सा एक ब्रिज भी बनाए हुए हैं जिसको लकड़ी से बनाया हुए हैं।

अलमीरा भी लगाए हुए है बहोत सारे फैन्स भी देखने को मिल रहा है लाइट्स भी है।

बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर को देखकर मुझे या लग रहा है कि यह एक काउंटर है जिसमें लिखा हुआ है कि तेजू टु ईटानगर।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

यह एक असेंबली ग्राउंड लग रहा है इसमें बहोत सारा टाइल्स भी बिछाये हुआ है और एक पोडियम भी नजर आ रहा है।

इसको गोल्डन कलर से पेंट किया गया है।

इस तस्वीर के अंदर मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है और यह भारतीय स्टेट बैंक है।